और ये गैरेज इतना शानदार गैरेज है जहाँ आपको अच्छे वर्कर्स मिलेगे अच्छे काम करेगे।

और वर्कर्स को ये काम करने बोल रहे हैं वर्कर्स टाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे रख रहे हैं।

यहाँ एक इंडिया पोस्ट पैमेंट बैंक है।

इस किडजी स्कूल में इस टेबुल पे बहुत सारी बुक है और एक कंप्यूटर है।

और जंगल के बीच में चारों तरफ पेड़ पौधा है और निचे गहराई है गहराई के ऊपर राधा और कृष्ण और बोद्ध भगवान --